ये एक यहां पे दांतों की क्लीनिक दिख रही है। यहां पे--

बहोत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं।

ये एक यह पे बाद सा ग्राउंड है।

ये एक यहां पे बड़ी सी दुकान दिख रही है फर्नीचर की--

और इसे यहां पे पेंट भी किया गया है।

और यहां पे बड़ा सा झाड़ भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे दुकानें दिख रहे हैं।

डॉक्टर मेडिकल्स की क्लिनिक भी है बाहर--

सामने यहां पे बड़े-बड़े बिल्डिंगा है।

बहुत सारे यहां पे फूलों के--

चेयर्स है टेबल भी है यहां पे।

बोहोत सारी बूटियां भी रखे हुए हैं।

और यहां पे एक ए_सी_सी वोल्वो बेलगाडी टू धारवाड़ बस है।

पढ़ रहे हैं यहां पे और सब लोग वाईट कपड़े पहने हुए हैं।

टंगिया रखे हुए हैं बहुत सारा सामान है नीचे यहां--

यहां पे बहोत सारे शेल्फ़ बनाए गए हैं।

यहां पे बहोत सारे घरान दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पॉट्स है और उनमें यहां पे --

लड़ा भी छोड़े गए हैं झाड़ू के यहां पे।

यहाँ पे बहुत सारे--

हैंगर्स में कपड़ों को रखा गया है।

यहां पे पूरे नीचे खड्डे हैं बड़े-बड़े--

बहोत सारे लोग रहे हैं।

आजू बाजू बड़े-बड़े बिल्डिंगा है।